बीच बीच में कुछ लोग रोड़ ठीक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर बोहोत छोटे-छोटे खंभे जैसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है।

उसके ऊपर नीला बोर्ड लगा है जिस पर एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

रोड पर बहुत सारे बच्चे लाइन से जाते हुए दिख रहे हैं।

जहां पर बहुत सारे रंग बिरंगी ओटो आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिम अंदर बोहोत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए दिख रहे हैं।

साइड साइड में फूल के पौधे लगे हुए भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें रेस्टोरेंट के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है।

साइड की दीवारो पे फ्रेम और गुब्बारे से डेकोरेशन होती हुई भी नजर आ रही है।

ऑफिस को लाल और पीले गुब्बारों से बहुत सुन्दर तरीके से सजाया हुआ है।

तस्वीर में हमें मस्जिद के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है।

और कुछ समान बॉटल डब्बे रखे हुए दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें मंदिर के बाहर का नजारा दिखाया गया है।

तस्वीर में हमें पीले रंग की दुकान दिखाई दे रही है।

टेबल पर पतीला प्लेट जैसा सामान रखा हुआ भी दिख रहा है।

घर के पीछे की तरफ कुछ पेड़ लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

फुटपाथ के बीच में एक घर बनता हुआ दिख रहा है।

स्विमिंग पूल के अंदर कुछ लोग नहाते हुए दिख रहे हैं।

स्वीमिंग पूल के साइड में बहुत सुन्दर सुंदर घास और पौधे लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में हमें दुकान के बाहर का नजारा दिखाया गया है।